ओ ए कुरिया छोटे हे ज्यादा बड़े नइये कुरिया हा आ उए मा थैला भी रखे हे एक ठ कुरिया मा।

एक चेंबर दिखत हे जीहां लाली- लाली नवा नवा कुर्सी लगे हे आउ एमा झास एग्जास्ट पंखा भी लगे हे।

ए हरा-भरा दिखाय देत हे सब अंग मोला अऊ कत्ता कन रुख राई हे अऊ रद्दा भी बहुत प्राकृतिक रद्दा दिखाई देत हे अऊ बादल के भी-भी बहुत सुंदर दिखाई देत हे।